व्यक्ति टहल रहे हैं कुछ खेल रहे हैं आसपास कुछ अह पेड़ पेड़ लगे हुए हैं कुछ बिल्डिंगे बनी हुई--

येह काफी के अंदर बड़े एरिया मे फैला हुआ है।

यह एक मार्केट है जिसमें कुछ दुकानें बनी हुई हैं वहीं कुछ--

यहां एक ग्राउंड है जिसके चारों तरफ से बाउंड्री है वहीं दूर एक--